एक गराज के अंदर खड़े हैं जहाँ पर --

होली का लुफ्त उठाते हुए यहाँ पे ।

आज जहाँ तक नजर दौड़ाते है वहाँ तक हमें बड़े-बड़े घर बड़े-बड़े मकान --

गेट पर आप देख सकते हैं कि एक बहुत बड़ा सा मोर --

जिम में वर्क आउट करता हुआ यह लड़का दिखाई दे रहा है जो --